उसके साइड मे भगवान का मंदिर लगाया हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पे दो चेयर भी दिखाई दे रही है।

वहाँ पे ट्रैक्टर आ का चित्र है। .

दरवाजे को की कुण्डी भी दिखाई दे रही है सामने जगह दिखाई दे रही है वहाँ पे गैलरी भी दिखाई दे रही है।

पिंक कलर की बल्लून है वाइट कलर की बल्लून है वह पे हेलमेट भी रखे हुए दिखाई दे रहे है उधर सीढ़ियां दिखाई दे रहे हैं।

ग्राउंड पे कुछ प्लेयर दिखाई दे रहे है वहाँ पे एक अ म-- पेड़ भी दिखाई दे रहे है वहां पे सूखी वाली ल- लड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

ये चित्र एक पेट्रोल पंप का है वहाँ पे अ-- कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

ये चित्र एक गमले का है वहाँ पे गमला दिखाई दे रहा है पौधों को फूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं फूल अ- येलो कलर के दिखाई दे रहे है वहां पर चेयर दिखाई दे रही हैं।

वहाँ शटर भी दिखाई दे रहा है कांच का दरवाजा दिखाई दे--

रेल्वे स्टेशन पर कुछ लोग चेयर पे बैठे दिखाई दे रहे है टीन का शेड दिख रहा है वहाँ पे फैन दिख रहे है व इलेक्ट्रिक तार दिखाई दे रहे हैं।